तस्वीर किताबों की है। यहाँ पे एक बच्चा किताबें खरीदने आया हुआ है।

यह तस्वीर बहोत अच्छी लग रही है। यह तस्वीर एक बुद्धा भगवान की है।

इस तस्बीर में हमें कई लोग भी दिखाई दे रहें तस्बीर बहोत अच्छी है ।

नीचे ट्रांसफार्मर भी दिखाई दे रहा है। तस्वीर बोहोत अच्छी है।

यह तस्वीर एक कार की है इस तस्वीर में बहुत से टायर भी रखे हुए है।

यह तस्बीर बहोत सुंदर लग रही है | तस्बीर बहोत अच्छी भी दिखाई दे रही है।